फिश टाँक का दुकान है फिश टैंक की दुकान पर फिश टैंक रखा हुआ है पानी रखा हुआ है।

राइट पर तालाब आरी इधर एक झलि है इधर पर मछी है इधर पर तराज़ू है।

घर पे फूल का है इधर ब्लैक कलर में येलो कलर में यहां--

काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री काम चल रहा है।

लड़का फ़ोन पे बात कर रहा है प्लास्टिक होना है।

टेक है टेबल है कुछ काम क्र रहे है।

ब्लू कलर का गेट है कोई सामान रखा हुआ है पानी टेबल --

एक दम पार्किंग की जगह है अंदर भी कुछ वही टारेंज कलर का घर है--

लड़के लोग या लड़की लोग सब कुछ कैमरा है शे--

यहाँ पर भोत सारा समन पड़ा हुआ है खाली जगह है।

ऑटो एक दम बढ़िया है ब्लू कलर का--

यहां पे दो लोग है वहां पे लाइट है यहां पे कार खड़ा हुआ है कार के पास भी दो दो चार आदमी है।

उसके पास कुछ पानी की तरह गिलास की तरह सिस्टम बनाया हुआ है।

बना के हुआ है घर पर ब्रोंज कलर का इटेचबल टेबल है।

यहाँ पर एक बड़ा खेती है खेत जी में बहोत सारा--

जाड है यह पे कुछ खेती जला हुआ है पानी जला हुआ है बहोत ही एक दम सुन्दर है हरा कलर का--

और सब लोग इधर ही है कुछ काम कर रहे है कुछ आस पास में खड़े हुए है लाइट लेजारे है आरे है।

येलो कलर वाला मशीन है इधर पर दो लोग काम कर रहा है एक लोग चेयर पर बैठा हुआ है।

वाइट कलर पेंट मारा हुआ है इधर पे कलेक्शन दिया हुआ है पानी का इधर पे कलेक्शन --

इधर पे कुछ टेबल है चेयर है हरया कलर वाला टेबल चेयर --

पीला कलर वाइट कलर वाला है नीचे ऑरेंज कलर वाला फ्लोर का डिजाइन है यहां पर येलो कलर का लाइटिंग है बढ़िया है एकदम मस्त है सुंदर जैसा है ।

यहाँ पे रोड साइड है रोड साइड में--

एक एक आदमी एक एक मंदिर के पास आके कुछ उनका सपना कर रहा है इधर पे लाल व्हाइट येलो ग्रीन ब्लू ।

सब लोग साइकिल में आके साइकिल में ले रहे है रोलक उधर ही है एक दम--

फिलोवर के पास में इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल का खम्बे है।

चर्च फादर की पुतलियाँ रखी हैं सब लोग शादी कर रहे हैं इनवाईट कर रहे हैं बच्चे लोग थाली बजा रहे हैं सब लोग फंक्शन में सब लोग बात कर रहे हैं।

यहां पे स्कूल के बच्चे कुछ फंक्शन में सब लोग बैठे हुए हैं बैठके रेड कलर व्हाइट एंड कलर ड्रेस पहन के सब स्टेप बाई स्टेप बैठे हुए--

उसके अपोज़िट यलो कलर का है उधर झाड़ है उधर किया है सब लोग बैठे हुए हैं खेल रहे हैं।

बैठ के किसी का इंतेज़ार कर रहे ह एक बच्चा ह--